ऊपर कुछ लाइट की डोरिया भी फैली हुई है यहाँ पर एक बटन भी लगी हुई जिससे ये वॉशिंग मशीन चालू हो जाती है।

यहाँ पर कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है और ऊपर खम्बे भी गड़े हुए दिखाई दे रहे है और यहाँ पर कोई दराजे बनी हुई दिखाई दे रही सामने खिड़कियों में कांच भी लगे--

कुछ आम के पेड़ है कुछ अ चिरोल के पेड़ भी लगे हुये है उ नीचे कुछ हरी हरी हरियाली भी लगी हुई है और कुछ मिट्टी भी दिखाय दे रही है बगल में कुछ मिट्टी की दीवारे भी बनी हुई दिखाय दे रही --

है। ये गाँव जहाँ पर सुधा लिखा हुआ है। यहाँ पर अँधेरी रात दिखाई दे रही है बलब ही बलब जल रहे हैं और --

कुछ साबुन भी दिखाई दे रहनी नीचे के साइड बाटले और कुछ खोके भी डले हुए --

लटके हुए दिखाई दे रहे और नीचे कुछ जमीन है जिसपे कचड़ा-कूड़ा दिखाई । दीवाल भी कुछ गंदी ही यहां पर दिखाई दे रही हैं बोहोत गंदी है।

यह एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है यहाँ पर एक ब्लू रंग का लकड़ी का गेट लगा हुआ और सामने भी दिखाई दे रही और बगल में एक जाली भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

रखी हुई इन पर बुके हीं बुके जमीं हुई हैं और यहाँ पर कुछ मोटी और कुछ पतली बुकें हैं और ऊपर एक खन बने हुए हैं जिनमें बड़े-बड़े बल्फ लगे हुए --

वह एक लाइब्रेरी है जहाँ पर सामने का नजारा दिखाई दे रहा है और बंगलो में कुछ कांच के दीवारें बनी हुई हैं और यहाँ पर एक गेट भी लगा हुआ है और --